उसके आगे मैदान छूटा हुआ है।

वह कत्थई कलर के पत्थर पर रखी हुई है वह मैदान में रखी है।

इसके पीछे व्यक्ति के गद्दें रखे हैं।